एक छत पे योगा हो रहा है ।

साइकिल है ऑटो है एक व्यक्ति चल रहा है और औरते चल रही है ।

छोटे बच्चे दिखाई दे रहा है | महल दिखाई दे रहा है | दुकान दिखाई दे रहा है |

ऊपर बर्तन दिखाई दे रहा है हमें |

हरे रंग का कारपेट दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें हुंडाई शो-रूम दिखाई दे रही है।